एक तनिशा शोरूम दिखाई दे रहा है कपड़ों का क्लॉथ का।

अ कुछ फ़्रॉकक्स दिखाई दे रही हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा रॉड दिखाई दे रहा है। आ-- खम्बा देखई दे रहा है उसमे लैंप लगा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। एक बैनर लगाया हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिख रही है विंडो दिख रही--

अ आलू भुजिया का पैकेट दिखाई दे रहा है सेजवान का पैकेट दिखाई दे रहा है।

एक शॉप दिखाई दे रही है अ शॉप मालाओं की शॉप दिखाई दे रही है कुछ डिफ्रेंट - डिफ्रेंट फ्लावर्स दिखाई दे रहें हैं।

यहां एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्लाइड वाले झूले दिखाई दे रहे है स्लाइड पूल दिखाई दे रहा है कुछ कचरा दिखाई दे --

कटोरी में चटनी है एक पत्ता रखा हुआ है एक ग्लास दो-दो ग्लासें दिख रहें हैं कुछ टेबल चेयर दिख रहें हैं।